पिछाड़ी बिटिन आदमी की टोपिली छन यु नमाज पण मस्जिद मा आयां स्पीकर वे मा दिखेणु लैट भी दिखेणी।

पिछाड़ी बटिन जो इस्कूल की बिल्डिंग छा वो दिखेण छ लगी एक लाल रंग की बिल्डिंग भी छा पिछाड़ी बटिन मै एक डालू छ दिखौणु पिछाड़ी बटिन जू छा हौर आसमान भी छा।

तीन चार बस छ खड़ी हुईं ये बस स्टैंड के धोरा की तस्वीर छ एक पिछाड़ी में एक बिल्डिंग भी छ दिखेणी बस का एंच बिटिन टिन शेड छ लग्यूँ पिछाड़ी बिटिन एक बहुत ही बड़ु आसमान छ दिखेणु।

दुईयों भगवान जी कि मुर्ति पर फूलों की माला छ पैराईं गहनों के फूल की एक जनानी पूजा छ कनी दुई बैरवान अलग छ पूजा कनी पिछाड़ी बिटिन ग्रिल भी छे ये पर लगीं सिल्वर रंग की।

छ नौनियाल हाथी क ऐंच बैठयूं येका चस्मा छिन पैनिया हलकी नीले रंग की टी-शर्ट च पेनी और डार्क पेण्ट च पेनी।

पिच्याडी भिटिन जो हाथी च वो जो नकली च और वेंकी सूंट के ऐंच जो आदमी च और जो हाथी का दांत छन हाथी खुवाजा का दिख्याणु ये माटू बी च ये तस्वीर पर।